बगल में एक छोटी-सी लकड़ी की नाव है जो की किनारे की तरफ है।

यह एक झूले का दृश्य है जो गोलाकार में है झूला चल रहा है बगल की तरफ कई सारे झूले है।